मशीने लगी हुई है ये मशीनें काफी मात्रा मे दिखाई दे रही है।

और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि हरे कलर की है यहा पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है निचे दरबाजा दिखाई दे राहा है उस पर हमे खिडकी दिखाई दे रही हे खिडकी पर कुछ पोस्टार लगे है एक --

बिल्डिंग के ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर एक कुछ लिखा हुआ है निचे की तरफ लाइटें दिखाई दे रही है।

यहां पर एक घास फुसली झोपड़ी दिखाई दे रही है जिसमें कुछ आकृति लटकी हुई है पेपर के बने हुए स्टार दिखाई दे रहे है बेल्स दिखाई दे रही है नीचे भी बहुत सा सामान रखा है।

इसमें एक आदमी खड़ा है सफ़ेद रंग से पट्टियां खींची हुई है पेड़ दिखाई दे रही है घनी घनी झाड़े दिखाई दे रहे है या पेड़ बहुत घने है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और या पेड़ दूर दूर तक फैले हुए है लोग खड़े है।

शीशे दिखाई दे रहा है शीशे पर स्वेटर लगा हुआ है नीचे एक बार बोर्ड लगा है जो सफेद रंग का है इस पर नीलम से कुछ लिखा हुआ है ऊपर की तरफ तार जा रहे हैं आगे की तरफ फीलिंग लगी हुई है जो की स्टील की है।